और जिम का डेकोरेशन भी मुझे बहोत सुंदर देखने में लग रहा है और यहां पे लाइटिंग भी मुझे बहोत सारी देख --

जो कि उसके नीचे दो लड़की के नीचे मुझे एक पिंक कलर का चार्ट भी बिछा हुआ दिख रहा है जो योगा कर रही --

मुझे स्टेशन के एक पटरी में वहां पर मुझे एक ट्रेन खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जोकि स्किन कलर में मुझे दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर मुझे येलो कलर के तीन टेबल और एक वाइट कलर के दो टेबल देखने को मिल रहे हैं और एक प पहले साइड में मुझे एक रेड कलर का --